एक लड़का यहां पर अपनी तस्वीर--

ये एक क्लास है ये क्लास का नाम है मित्तल आर्ट --

ये एक होटल है होटल के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है बहुत सारी लाइट --

बहुत सारी टेबल के पास चेयर भी लगी चेयर भी लगी हुई है और बहुत सारे डस्टबिन भी रखे हुए है।

सामने एल_ई_डी लगी हुई है बहुत सारी लाइट --

और बहोत सारे पौधे वृक्ष और वगैरा भी लगे हुए हैं।

गाड़ी भी लगी हुई है और एक रेहड़ी पे आदमी सब्जी भी बेच रहा है।

यहां पर एक सड़क बनी हुई है सड़क के ऊपर बहुत सारे लोग--

डाले हुए हैं और बच्चों के भी कपड़े लगे हुए हैं।

व्हाइट कलर की टंकी रखी हुई है।

एक सैनिटाइजर की बोतल भी पड़ी हुई है।